और अलग-अलग वैरायटी के कपड़े हैं यहां पर--

कथाई कलर का गेट भी है।

गेट है और ये ज्वेलरी शॉप है अच्छा स्टैंडर्ड ज्वेलरी शॉप है यहां पर लोग ज्वेलरी की खरीदारी करने आते हैं।

ये आइसक्रीम पार्लर है इसका नाम अपना आइसक्रीम पार्लर है।

और बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा है पर्दों से डेकोरेट किया गया है।

पौधे लगे हैं वन विहार में बाहर के साइड अंदर जंगली एरिया है ये वन विहार में लोग जानवरों को देखने जाते है।

शोरूम के अंदर बहुत सारी बाइकें हैं।

छोटा सा ये शोरूम है इधर गाड़ियां कुछ ज्यादा ही खड़ी हैं।

आश्रम के पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

ऐसा लग रहा है मनुआमान टेकरे से नीचे उतर रहे हैं।

ऐसा लग रहा है करोना काल की पिक्चर है।

इसमें वाइट सोफे लगे हैं आगे साइड --

यहां पर सोफ़े भी लगे हुए हैं सामने टेबल पे फ्लावर पॉट रखा हुआ है यहां पर ब्राइडल मेकअप किया जाता है।

यहां पर गर्मियों में लोग स्विमिंग के लिए आते हैं स्लाइड भी करते हैं वाटर के अंदर--

पेट्रोल टैंक पे लाइटिंग बहुत ज्यादा है साइड में अंधेरा हो रहा है।

ये इसकी बाउंड्री है जो जाली से बनी हुई है।

साइड में पेड़ लगे हुए हैं एक आदमी है जो गेट पर खड़ा हुआ है।

वो बाहर साइड पेड़-पौधे लगे हुए हैं और यहां लिखा है डॉटर्स नेस्ट नेक्स्ट --

यह सर्विस डीलर की दुकान है।

ये एक बड़ी सी होटल है होटल का नाम मयूर पैलेस है बाहर पेड़-पौधे रखे हुए हैं।

होटल में काज वाले खिड़कियां हैं खिड़कियों पे वाइट पर्दे डले हुए हैं।

काफी खूबसूरत सी यह होटल लग रही है।

यह एक कार की पिक्चर है मौसम बहुत सुहाना है।